अंदर ओ अ क्यारियां लगी हुईं है ऊपर वृष दिख रहा है।

और ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है।

यह सामने ग्राउंड दिख रहा है सड़क दिख रही है।

इसमें व्हाइट कलर से लिखा हुआ दो टायर के चित्र बने हुए हैं।

और दुकान के अंदर बहोत सारा एसोसरिज रखा हुआ है।

ये सड़क दिख रही है बहोत सारे घास है।

अ ग्रीन कलर का गेट है कार खड़ी है।

बिल्डिंग में ऊपर गाड़ी लगा हुआ है एक ब्लैक कलर का बैनर है।

ट्रक में टायर लगे हुए हैं बड़ी सी सड़क दिख रही है।

ये सामने बेड की शॉप लग रही है।

कुछ पाउच रखे हुए हैं पेट्स के खाने का समान है।

और बेल्ट र टंगा हुआ है रेड कलर का पिंजरा रखा हुआ है।

पहाड़ के बीच में पानी है पानी में कुछ लोग नहा रहे है।